यहां जमीन पे छोटी छोटी घास लगी हुई है हरी भरी जैसे की हरियाली दिखाई दे रही है।

शायद कॉलेज हो सकती है और नीचे बहुत सारे रूम बने हुए हैं बीच बीच में खिड़कियां लगी हुई हैं।

अंदर की साइड में टेबल पड़ी है और यहां बर्तन रखे पड़े हैं बाहर अंडे पड़े--